और यहाँ पर बहुत सारे लोग है जो स्केटिंग कर रहै है कुछ लोग निचे बैठे है कुछ लोग खड़े हुए है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी सी नदी है और नदी के किनारो पर--

बोट है जिससे रस्सी से बांधा गया है कीनारो पे बहोत सारे पत्थर पड़े है।

यहाँ पर एक दुकान है जिसपे लिखा है विशाखा डेरी पार्लर --

बल्ब लगा हुआ है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक कॉलोनी है और कॉलोनी में बोहोत सारी मल्टियाँ बनी हुई हैं।